इस फोटो में कुछ लड़कियां कथक की पोशाक पहनकर कथक कर रही हैं।

यहां पर दो स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जहाँ पर बहुत ही प्रकार की जूतियां शूज बूट्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक होटल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है दिल्ली सिक्स सिक्स वेजिटेरियन--